यह सिटी सेंटर सैलून है।

लाल कलर की धार्मिक किताबें रखी है।

यह एक रेलवे स्टेशन जैसा लग रहा है।

यहां कुछ लोग योगा पी_टी कर रहे है।

हम लोग बूटिंग इंजॉय कर रहे हैं लेख का सुंदर--